यहां मुझे पेड़ दिखाई दे रहें हैं।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

इस फोटो में मुझे कुछ चारा दिखाई दे रहां हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ वाहन दिखाई दे रहे हैं।